लैडर रखा हुआ है और यह जो बिल्डिंग है यह कोई इंस्टिट्यूट है।

सजा हुआ है। गेट खुला है और पीछे बोहोत गाज दिखाई दे रहा है सामने भी हैं

एक शॉपिंग मॉल का ये अंदर का पिक्चर है जहां पर रैंक वाइज एक-एक एसेसरीज रखा --

ये एक मंदिर का अंदर वाली हिस्सा है। यहां पर फैन ऑन है।

एक समुन्दर का पिक्चर है सनरायज हुआ है पानी के ऊपर सन का जो किरणे वो झिल मिला रहा है।

एक मन्दिर का पिक्चर है ये मन्दिर के शी शान मे फ्लैग है।

और पाम कज है। पाम का जो पे है वो है --

अ चल रहा है ब्लू कलर का शर्ट और भी सारे आलू का बस्ते है।

ये एक फुड डिश है यम्मी डिश जहाँ पर दो स्नेकस दिखाई दे रहा है सलाड है।

ये एक यम्मी डिश है और अं जिसके ऊपर जिसके ऊपर है फूड --